वहां काउंटर पे एक लड़की व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के खड़ी है।

और नीचे प्लास्टिक का एक सीट बिछा हुआ है उसके पीछे तरफ एक कांच की खिड़की दिखाई दे रही है जो अल्मुनियम सीटेट की हुई है।

सोफा भी लगा हुआ है टेबल के ऊपर कुछ लोहे के वस्तु रखी हुई है सामने काउंटर दिख रहा है।

सामने एक व्यक्ति ट्रेडमिल पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बगल में एक और ट्रेडमिल है जो खाली है।

वहां चलने का रास्ता है वहां पे कुछ घांस भी उगे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक जिम दिखाई पड़ रहा है जिम में एक्सरसाइज करने के लिए काफी मशीन लगी हुई है।

ऊपर में ए_सी भी लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन और एक और ए_सी लगा हुआ है बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं।

दूर दूर बड़े बड़े टावर भी दिखाई दे रहे हैं।

क्रॉस का निशान बना हुआ है नीचे काफी व्यक्ति खड़े हैं।

पीछे खाली एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान के पीछे पत्थरों से बने हुए कुछ कांग्रेसी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक सैलून दिखाई पड़ रहा है सैलून के बाहर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई पड़ रहा है जिसने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

आगे आगे कुछ व्यक्ति चल रहे है जिन्होंने सर पे कुछ ले रखा है और हाथ में उसके बड़ी सी ढोलक है।

उसके ऊपर एक सोलर पैनल भी लगा दिखाई दे रहा है।

सफेद और ला लाल रंग की पट्टी से रंगा हुआ है।

फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है।

एक व्यक्ति टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के आता हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे एक रोड जा रहा है।

फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा हैं।

ऊपर बोर्ड पे ऑडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक पेड़ भी दिख रहा है।

ये चीनी मिट्टी पत्थर का बना हुआ है पीछे काले रंग की कुर्सी दिखाई पड़ रही है।

पीछे कुछ रूम्स दिखाई दे रहे है।

सामने एक गेट दिखाई दे रहा है जो भी बस का बना हुआ है।

इस फोटो में एक जलधारा का दृश्य है इसके बीच में काफी बड़े बड़े काले काले पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं।

और उसके आगे भी पर्वत दिखाई दे रहे हैं आसमान में बादल सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।